और टिशू पेपर गिलास वगैरह रखे हुए हैं मेनू रखे हुए हैं।

और सामने ही ऑफिस बना हुआ है उस पे टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ--

ये भोपाल कोलार का एल_एन_सी_टी कॉलेज का--

ये काफी सारी बकरियां हैं जो कि आप देख सकते हैं।

ये कोई मकान बन रहा है जो की आप देख सकते हैं पिलर खड़े हुए ऊपर सेंटिंग लग रही है।

यह एक बड़ा सा मार्केट है जिसमें काफी सारी मात्रा में पब्लिक घूम रही है।

और रात का नजारा है जो कि क्लियर नजर नहीं आ रहा--

और वहीं पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

ये काफी खूबसूरत नजारा है ये शायद कोई चर्च का है।

और कुछ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं।

और डेकोरेशन बेल मेल वगैरह से--

और भी भिंडी बैंगन वगैरह काफी सारे आइटम रखे हुए हैं यहां पे--

और काफी सारे गेंदा के फूल भी लगे हैं।

और भी काफी सारे सोप प्लांट लगे हुए हैं।

और शायद हवाई अड्डा का नजारा है।

बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है सामने जिसमें--

और कुछ यहां पे काफी सारी चद्दर या लकड़ियां पड़ी हुई है अंदर--

और काफी सारे सामने पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

गमले भी रखे हुए हैं जो कि उनमें पौधे लगे हुए हैं।

यह एक किराने की दुकान है जहां पे आप देख सकते हैं अलग-अलग प्रकार के मैगी--

और बहुत सारे मसाले वगैरह टंगे हुए हैं।

गुडका पानी की जहां पे कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह निर्मल साबुन वगैरह भी--

मजे ले रहे है और एक पत् एक लड़का जो कि पत्थर पे बैठा हुआ है नजारा देख रहा है और पीछे एक नाव खड़ी हुई है।

और साइडों में राइट साइड में काफी खूबसूरत--